कुछ हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे है खाने की कुछ चीजें फोटो दिखाई दे रहे है तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।

आदमी दिखाई दे रहे मोटरसाइकिलें दिखाई दे रही है।

तौलिया दिखाई दे रहे है बिजली का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं उड़ते आदमी दिखाई दे रहे हैं खाने की कुछ चीजे दिखाई दे रही है।

ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ पीछे एक झंडा दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे बहुत सारे फूलों की माला दिखाई दे रही है जिनमें अलग अलर की कलर की मालाएं टंगी हुई हैं। कुछ हरे रंग की कुछ रेड कलर की कुछ पीले कलर की कुछ पिंक कलर की।